मुझे एक इमेज में एक जिम दिखाई दे रहा है जोकि इस वक्त ओ ओपन है और जहाँ पे भो जिसकी बहार --

उसके बाहर एक पेड़ लगा हुआ है और उसके नीचे एक रेलिंग लगी हुई है। उसके ऊपर एक छत है फिर उसके ऊपर एक घर बना हुआ है।

जिसके बाहर बोहोत सारी बाइक रखी --

दो लड़के दिखाई दे रहे हैं एक कार रखी हुई है ये कार का गेट खोलकर कुछ सामान बहार निकाल रहा है और एक लड़का कहीं जा रहा है इसके बहार एक शॉप दिखाई दे रही है।

उसके नीचे एक छोटी बोरी रखी हुई है। ऊपर चद्दर दिखाई दे रही है मुझे।

उसके सर पे एक येलो कलर की कैप लगी हुई है। उसने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ है और दिवील येलो कलर की दिखाई दे रही है मुझे --

मुझे इस इमेज में छोटी-छोटी बच्चियां दिखाई दे रही है दो छोटी बच्ची है।

उसके पीछे बोहोत सारे तार लगे हुए है। और एक बोरी पड़ी हुई है वो और बोहोत सारे तार है। और छत दिखाई दे --

कुछ गेम लगा हुआ है बच्चों का खेलने का। एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उसके सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। बोहोत सारे झूले --

पीछे कुछ गेट लगे हुए हैं जो कि लकड़ी के हैं। वो भी येलो कलर --

यह मुझे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक सिक्यूरिटी खड़ा हुआ है और तीन कुत्ते बैठे हुए हैं।

ये कोई शॉप पर खड़े हुए हैं बुक स्टोरी स्टोर शॉप है कोई इसमें खड़े हुए है। भोत सारे लोग --

खाली जगह दिखाई दे रही --

आसमान दिखाई दे रहा है भोत सारे घर हैं।